इस पिक्चर में चार स्कूटी है एक रेड कलर की एक वाइट कलर की एक येलो कलर की एक ग्रे कलर की --

तीन झूले बहुत बड़े -बड़े है नीचे एक आदमी खड़ा हैं ।

इस पिक्चर में एक टाउन बना दिखाई दे रहा है जिसके आसपास बाउंड्री लगी हुई हैं।

कोडिडोलर की निचे की टाइल्स ब्राउन और वाइट में दिखाई दे रही है ऊपर छत है छत में बहुत सारी लाइटिंग रखी हुई है।

और ब्लैक कलर का चश्मा लगाया है और पीछे में सेल बने हुए है जिसमें बहुत सारी कॉपी किताब रूलर रखा हुआ है।

घास भी बिछी हुई है जोकि हरी कलर की है उसके पीछे भी बोहोत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और पेड़ भी लगे हुए--

इस पिक्चर में बोहत बड़ा झरना दिखाई दे रहा है जिसमें पानी बेहता हुआ दिखाई दे रहा है आजू -बाजू बोहोत बड़े -बड़े--

तीन आइस क्रीम रखी हुई है अलग- अलग फ्लेवर में --

इस पिक्चर में एक लड़की कत्थक करती हुई दिखाई दे रही है जिसने लाल और ऑरेंज कलर की साड़ी पेहनी हुई हैं।

और आजु -बाजू वाइट कलर से दीवाले पोते हुए है और पोस्टर लगा हुआ है दिवालो में--

इस जंगल में बड़े -बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है जोकि हरे -भरे है नीचे में भी --